कुछ लोहे के दो पिलर खड़े हुए हैं जिसके ऊपर छत के लोहे की छत लगाई गई है।

कुछ बनाई गई है जोकि पत्थरों की बना रखी है पानी में।

यहां पर पीछे सफेद रंग का पेंट किया गया है नीचे बहुत सारे गत्ते के बॉक्स भी रखे हैं।

इस चित्र में हमें यहां पर कोई बैठक दिखाई गई है यहां पर पीछे हेल्थ क्लब फुगाना श्री जितेंद्र मलिक का एक पोस्टर लगाया हुआ है।

जिसने एक आदमी ने दूसरे आदमी के ऊपर हाथ रखा हुआ है।

जहाँ पर पीछे बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं और छोटे छोटे लोहे के खम्भे लगाए गए हैं।

जो देखने में किसी किराने की दुकान लग रही है यहां पर लकड़ी के कुछ खांचे बनाए गए हैं।

यह फूलों के पेड़ों को पानी दे रहा है पीछे एक घर है।

इस चित्र में हमें एक बस स्टैंड दिखाया गया है जहां पर कुछ बसें खड़ी हुई है।